सामने कीबोर्ड है और उसके बाजू में--

यहां पे एक औरत पानी को पा पानी दे रही है।

ली ग्रीन कलर की नली भी दिख रही है।

एक भाई साब खड़े हैं जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और कोने में एक गाय खड़ी है उसके पास एक पेड़ लगा हुआ है ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है।

ये टमाटर दिख दिख रहे जिसमें लाल टमाटर और नीले टमाटर और कच्चे टमाटर और पक्के हुए टमाटर--

और ये एक बकेट में दिखाई दे रहे काफी टमाटर में दाग लगे हुए है।

केसरी रंग है एक कार्पेट पर लीला रंग है एक कार्पेट पर ब्लू रंग है।

खंभे भी दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

दो तीन लोग नहाते हुए दिख रहे है स्विमिंग पुल पे--

यहां पे एक रूम दिख रहा है और एक पंखा भी दिख रहा है और दो लड़के दिखाई दे रही है दो खटिया ही दिख रही है एक कबर्ड दिख रहा है।

और सामने अंधेरा भी दिख रहा है लाइट चालू दिख रही है और सफेद पेंट लगा हुआ दिख रहा है।

ओ नीचे काफी मरून कलर के भी कप दिखाई दे रहे हैं।

सभी कप को एक साथ लाइन में रखा हुआ है।

और उसने शूज पेहने है साइड में ये काफी पेड़ दिखाई दे रे भी दिख रा है और बिल्डिंग भी दिख री है और आ सूरज दि--

ये एक एसटी बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पे काफी सारे बस भी दिखाई दे रहे हैं काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में--

एक कोने में चेयर है और एक टेबल के पास रखी हुई है एक टेबल भी है।

चार पांच बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और उसमें कांच की खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और ग्रास भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है।

मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में काफी सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं जिसमें किंडर जॉय --

और काफी ज्यादे और भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं और--

दिखाई दे रहा है और उसके नीचे काफी सारे डिब्बे और पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं सेल्फ भी--

ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हो और यहां पे--

भी दिखाई दे रहा है वो एस_टी दिखाई दे रहा है तीन--

एक ब्लू कलर ब्लू एंड व्हाइट कलर --

एक मकान दिखाई दे रहा है जिस पे सफेद पेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर एक आसमान दिखा दे दिखाई दे रहा है।

एक होटल जैसा दिखाई दे रहा है काफी सारे सोफे दिखाई दे रहे और--

टेबल भी दिखाई दे रहे है और ऊपर भी छत में भी ग्रास दिखाई दे रही है।

यहां पे दो लड़के दिखाई दे रहे है जो कुछ खा रहे हैं उसके टेबल पर एक--

और ये पेड़ भी एक दिखाई दे रहे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है यहां पे एक रोड पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

टी_वी भी दिखाई दे रहा है ऊपर बल्ब जले हुए दिखाई दे रहा है यह पे एक होल्डर भी दिखाई दे रहा है दिल दीवार में काफी सारी डिजाइन भी की हुई दिखाई दे रही है।

ग्लास भी काफी सारे दिखाई दे रहे हैं एक बंदे का हाथ भी दिखाई दे रहा है जिसने एक शर्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।